यहाँ पर हमें एक ग्रॉसरी स्टोर दिख रही है और इस ग्रोसरी स्टोर पर हमें --

कुछ काम कर रही है।

और कई सारा दुकान नजर आ री है।

अअअ बहोत ऊँचाई दरवाजा है और उस मंदिर के ऊपर बहोत सारा गोल्डन कलर की लाइट लगा रक्खा हुवा है।

और उसकी बाहर भी एक मंदिर तरह कुछ दिखाई दे री है।

कूदने की जगह भी है और बहोत सारा टॉयज भी यहाँ पे है और ये पाइप ब्लू कलर की है।

यहाँ पर एक स्पा अण्ड सलून की कुछ पोस्टर लिखा हुआ है और उसके अंदर एक वेल रूम सलून भी है और उसके बाहर --

यहाँ पर हमें दिख रही है की एक बहोत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर निर्माण हो रही है या --

देखने को मिल रहा है जो रात में बहोत सुदृश्यमान लग रही है।